इस अलमारी में भी बोहत ज़्रारे पटाखे रखे हुए हैं ।

और इसमें एक अलमारी रखी हुई है जिसमें बोहोत सारे पटाखे वटाखे रखे हुए हैं। यहां पर दो बल्ब लगे हुए हैं।

बोहोत ही मुनासिफ़ दामों पर यहाँ पर इसकी फीस है।

यह बहोत सुन्दर बनाई गई लाइब्रेरी है |

और यहां पर एक सफ़ेद कलर की गाड़ी भी खड़ी हुई है | यहां पर बोहोत हरी-भरी हरियाली हो रही है।

यहाँ पर सभी प्रकार की वस्तुए मिलती है| जैसे पेंट सर्ट जूते और यहा पर यहा पर टी-शर्ट भी मिलती है और बनियान भी।